ऑरेंज ग्रीन व्हाइट कलर में आ बाहर भारत का नक्शा बना हुआ है। तिरंगा कलर --

यह बड़ा-सा हॉल है| इसमें बहुत-सा बहुत सारी मशीनें रखी हुई है| यह सारी एक्सर्साइज़ की मशीनें है और इस हॉल में व्हाइट कलर का पेंट हो रहा है --

एक ग्राउंड सा है उसमे पेड़ ख-खड़ा है और एक आदमी खड़ा है पीछे मकान है।

ये दोकान है ये फूलों की दोकान है | दोकान में लाइट जल रही है । दोकान के बाहर बोर्ड लगा है जिस पर इसका नाम लिखा है आकाश गिफ्ट कॉर्नर फूल भंडार---